लकड़ियाँ रखी हुई हैं एक मेज रखी हुई हे एक चेयर पड़ी हुई हे ।

सामने की ओर दीवार पे बहोत सारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे लकड़ी की मेट बिछी हुई दिखाई दे रही है दीवार व्हाइट रंग --

पीले कलर का पेंट किया हुआ दिख रहा है पररर्र एक व्यक्त खड़ा दिखा---

रखी हुई दिखा दिखाई दे रही है जो कि भगवान की मूर्ति लग रही हे ।

दे रहे हैं और एक दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मूर्ति दिखाई दे रही हे ।

यहां पे हम एक रूम देख रहे हैं।

जो कि सायद बन रही है बाँस लगे हुए हैं।

बोहोत सारे पेन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पर्दा पड़ा हुआ है ब्लैक बोर्ड --

लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हम एक बि ल् डिंग देख रहे हैं।

पर बादल दिखाई दे रहे हैं।

से पेंट हुआ है व्हाइट कलर से भी पेंट हुआ है ऊपर में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रा।

पर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमें शीशे की अलमारियां दिखाई दे रहीं हैं जिसपे बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

नीचे हम्में टायल दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बहुत सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

शीशा लगा हुआ है लाल कलर की च चटाई बिछी हुई है।

यहाँ पे ह्ममें एक घर दिखाई दे रहा है घर--

जो की साड़ी पहने हुए है कोई सूट पहने हुए है।

हील्ड देख रहे हैं पीछे घर बने हुए दिखाई दे रहा है पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सोफा जईसा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमें दो बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं ईंटे की फर्श लगी हुई दिखाई--

पर हमें लाइट जलती हुई दिखा रही हैं नीचे ईंटे बिछे हुए दिखा रहे हैं।

एक दुकान बनी हुई दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हम एक बेनर लगा हुआ देख रहे हैं एक नीचे दुकान है।

ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है काले रंग की।

नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं बोहोत सारे वे--

यहाँ पे हम एक सोरूम देख रहे हैं सोरूम में बोहोत सारी चेयर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं बाहर बोहोत सारी--

पर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

और हमें शोरूम में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा--

जिसमें की घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

ये विंसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पर हमें बादल दिखाई दे रहा है।